बहौत से गुलदस्ते भी दिख रहे है।

पत्थर के ऊपर हमें बहुत सारे आदमी लोग दिख रहे हैं।

हमें यहां पे दो पर्दे दिख रहे हैं जोकि सफेद रंग में है।

यहाँ लोहे की चेन दिख रही है और एक ख़राब गाड़ी दिख रही है जिसके बगल में एक और गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है।

इसका छत पे तीन सफेद रंग की टी --

साइड में हमें साइकिल्स वगैरा दिख रहे हैं और उसकी उधर हमें दो मोटरसाइकिल दिख रही है।

पीछे हमें सफेद रंग की बहोत बड़ी इमारत दिख रही है।

यहां हमें दो महिला दिख रही है आगे हुए जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े लगाए हैं।

यहां हमें बहुत से आदमी दिख रहे हैं।

कोने में सीमेंट से ढलाई करते हुए एक आदमी दिख रहा है।

यहां में नीचे जमीन पर टाइल्स लगे हुए दिख रहे हैं जो की भूरे रंग के हैं।

कोने में हमें दो हरे रंग के दो सोफे दिख रहे हैं।

बीच में हमें हरे रंग की बहुत सारी कुर्सियां दिख रही है और भूरे रंग के चेयर टेबल दिख रहे हैं।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

ऊपर हमें बहुत सी चीजें दिख रही हैं।

यहां पे हमें हरा घास दिख रहा है।

साइड में हमें लाल लाल रंग के दो बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं।

आगे हमें बहोत से छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं जो कि हरा है।

पहार के बीच में से पानी का झरना बहते हुए दिख रहा है।

यहां हमे बहोत सारी बहोत सी बहोत सारी कुर्सियां दिख रही हैं जो की सफेद रंग में है और जिनके सर में पीले रंग का कपड़ा लगाया है।

जमीन पे टाइल्स लगे हुए दिख रहे हैं और ऊपर भी हमें सफेद रंग दिख रहे हैं।

हमें यहां एक आदमी दिख रहा है जोकि काले रंग की शर्ट पहना है उसके गले में एक हेडफोन है और उसके हाथ में एक पानी का बोतल है।

उसके आगे एक सफेद रंग का कागज का टुकड़ा है और लैपटॉप के साइड में पिंक गुलाबी कलर का कुछ पेपर्स वगैरह रखे हुए हमे दिख रहे हैं।